धोया हुआ है और व्यक्ति जो काम कर रहा है इसके अगल-बगल में एक दीवार है जो काफ़ी अच्छा दीवार है इसके सामने फूल रखा हुआ है फूल बहुत सुगन्धित होता है और यहाँ पे बहुत लोहे का सामान --

पानी में मछलियाँ भी होती है और बहुत मछुआरे भी आते हैं मछली मारने के लिए यहाँ पे नाव है जो नाव से इस नदी को एक पार से दूसरे पार जाने में सहायक होता है अच्छे से --